लाइट लगे हुए हैं छत पे बहुत सारे सब कुछ --

ये फोटो में बहुत सारे टावड़ है एक घर है एक रोड है।

चार चक्का है कुर्सी है आदमी है।

यहाँ एक आदमी है बहुत सारे कुर्सी हैं बैलून है टेबुल है लाइट है।

फूल है लाइट है पेर है।

लै कैलकुलेटर है टेबुल है कुर्सी है पंखा है बॉल बोर्ड है सीयुच है।

टीन है कुर्सी है टेबुल है रैक है पंखा है बल्ब है आदमी है।

लाइट है पंखा है बोर्ड है।

लाइट है करकट है एक आदमी है फूल है सीढी है।

कुर्सी है टेबुल है शीशा है।

बोतल है गिलास है डब्बा है।

पटड़ी है गिट्टी है लोहा है।

यह फोटो में एक आदमी है एक चप्पल है कुर्सी है टेबल है।

फैन है लाइट है पिलर है।

मुफलर है जैकेट है चप्पल है पनिक है बोरा है मिट्टी है ढाट है।

या फोटो में बोड़ा है कुर्सी है।

यह फोटो में एक बाइक है टायर है।

यह फोटो में एक पाइप है स्लिब है पेपर है डिब्बा है मिक्सी है जार है।

बोल है बेंच है कुर्सी है टेबल है छत है।

पिंक कपड़ा है एयर है बाल है।

बोतल है दवा है डिब्बा है घड़ी है तार है कराही है डोर है।